नीले रंग का शर्ट पेहेन कर एक आदमी खड़ा है और पीछे बाई ओर एक व्यक्ति नी-नी-नीले रंग का मास्क पहन कर खड़ा है।

एक समुंदर का दृश्य है जहां पर लोग पानी में खड़े हैं|

ने गले मे इयरफोन लगा रखे है और गुलाबी रंग का चेक शर्ट पहेन रखा --

व्यक्ति ने पैजामा पहन रखा है और टी-शर्ट पहेन रखा है ।

सामने की और एक कैलेंडर लगा हुआ है जिस पर सरस्वती माता की फोटो है।

पुस्तक बेचने के लिए दो व्यक्ति बैठे हुए है। जिनके सामने कई सारी पुस्तके बे रखी हुई हैं।

माता के आगे सर झुकाता हुआ एक लड़का जिसने अपने हाथ में एक फोन पकड़ा हुआ है और नीले रंग का टी- शर्ट और पाजामा पहन रखा है माता के मंडप को--

के टीशर्ट का रंग नीला है वहीं दीवारों का रंग सफेद और लाल प्रतीत होता है।